ये जो पिक्चर है ये फोर व्हीलर कार की है और इस पिक्चर में कोई मैकेनिक जो है खराब हुई कार को बना रहा है।

ये तस्वीर एल.जी. शोरूम की है।

ट्वेंटी फाइफ के आस-पास सीढ़ी दिख रही है और ये प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है इसको बहोत अच्छे ढंग से --

जोकि अपना ड्यूटी कर रहा है |